आ रहा है शायद उसकी न्यू शॉप हो इस कारण वो फोटो खिंचवा रहा है।

सभी बच्चे ब्लैकबोर्ड की तरफ देखते हुए नज़र।

दोनों तरफ हर भड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।